ये एक ऑफिस है या क्लीनिक है यहां पे एक राइट साइड में पेड़ भी है और ऊपर--

ये एक की दुकान है यहां पे बहुत सारे लोग हैं और यहां पे ब्ल्यू टी शर्ट पहना हुआ एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये एक मछलियों की दुकान है यहां पे एक आटा भी रखा हुआ है।

ये रेती डाली गई है काम कर लिया और आजू बाजू बड़े बड़े झाड़ा भी उठे हुए है।

ये एक जंगल है और यहां पे पानी पड़ा हुआ और --

स्पेस लगाया गया है ऊपर बहुत सारी पी_ओ_पी किया गया है एल_ई_डी ग्रीन ब्लू कलर की लाइट चालू है।

उसके पीछे एक ब्लू कलर का वॉल डाला गया और यहां पे बाहर--

यह एक पुराने जमाने का बड़ा सा महल है जो कि पत्थरों से तराशा गया।

बहोत सारे मछलियाँ की दुकाने है और यहां पे थैलियां है लोगो के हाथ मे--

ये एक कपड़ों की दुकान है यहां पे बैठने के लिए अंदर ग्रीन कलर का टेबल रखा हुआ है। बाहर ग्लास को--

और यहां पे एक ऑरेंज कलर ब्लैक कलर का मुंह का कुत्ता बैठा हुआ है और यहां पे --

रखे हुए है पाइप लाइन भी दिख रही है और यहां पे बाउंड्री भी दिख रही है आजू बाजू छोटे-छोटे घरा --

वहां पे लकड़ीयों की बाउंड्री है मारी हुई है छोटे छोटे प्लांट लगाये हुए है नीचे--

पीछे टेबल के ऊपर वाटर बॉटल बैगस पड़े हुए हैं और यहां पे दरवाजा खुला है यहां पे एक लकड़ी--

ये एक बिल्डिंग को बनाया जा रहा है यहां पे बहुत सारे तख्ते--